बोहोत ही सुंदर है और इसमें व्हाइट कलर की पेंट की हुई है और इसमें आने जाने की पूजा करने की जग--

इसमें बहोत सारे सामाने खेल कूद के सामाने बच्चो के खेलने के खिलोने बहोत सारे रखे हुए है।

यहाँ सामने एक मस्जिद नजर आ रही है। मस्जिद बहोत सुंदर रंग-बिरंगी अ इसकी पेंटिंग की हुई है।

यह अ अकेला है। इसमें इसके उपर एक लाई अ रौशनी छोड़ी जा रही है।

दफ्तर की ए ए अम दृश्य अम ल प्रतीत होता है।

एक व्यक अ जो खड़ा व्यक्ति है वह लाल रंग की शर्ट पहना हुआ है और ब्लू रंग की पैंट पहना हुआ है।